कुछ आदमी आगे की तरफ बैठे हुए हैं और बहुत सारे पंखे भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसका रंग सफेद है और ऊपर की ओर एक टंकी --

एक मुर्गियों का फॉर्म दिखाई दे रहा है।